इस तस्वीर में मुझे कटनी खुर्द रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक कूलर दिखाई दे रहा हैं।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

तस्वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे टी_जी_एस होटल दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं।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

इस तस्वीर में मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा है।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

इस तसवीर में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।